भैर बिटिन दुई स्कूटी छन लगीं यु दुकानों पर भीतर बिटिन आदमी भी छन जू कुछ सामाण छन लेण लग्यां।

यूँ का एंच बटिन आपते बोहोत सारा फूल भी व्हला दिखेण लग्यां जु कि कुछ असली फूल अर कुछ प्लास्टिक क फूल भी छन पिछाड़ी बटे आपते भोत सारा लोग भी ह्वला दिखेण लग्यां।

यां का पिछाडी बिटिन आप तें एक सफ़ेद कलर कु एक पुरु एक चादर होल दिखेण लगीं जेंन की युं पर ज्यादा प्रकाश या फिर बरखा न पड़ो।